यह एक मैदान है इसपे एक घर बन रहा है और इसपे छड़े डाल के लिटर डालने की तैयारी हो रही है यहां पे बहोत सारे मजदूर--

बहोत सारे मजदूर हैं जो अलग अलग--

यह एक गांव की पिक्चर है इसमें गांव में एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर टिन सीट लगी हुई है और गांव--

और यहां पे बैठने के लिए कुर्सी भी रखी हुईं हैं इस ऑफिस में पंखे भी लगे हुएं हैं और पिक्चर भी लगी हुईं है बस वगैराह--

सामने एक गैराज भी है जिसमें सामान रखें--

और बगल में बहोत सारे यहां पे कंपनियों के पोस्टर लगे हुए--

ब्रिज बनी हुई है और उसके पास में--

और ये जिम में अपनी हेल्थ को सही कर--

और यहां पे ऊपर एक टी_वी है जो चल रही है और इसके ऊपर एक फैन है और साइड में बहोत सारे --

स्टिकर हॉस्पिटल के लगे हुए है सामने रिसेप्शन भी है।

एक दराज में लाल रंग की शर्ट अ बैंगनी रंग की शर्ट रखी है दूसरे दराज में--

यहां पे एक काउंटर बना हुआ है जिसमें शीशे लगे हैं जिसमें प्रेस रखे हुए है।

यह पिक्चर की मैरिज हॉल की है मैरिज हॉल के किनारे में--

इसमें बाहर की तरफ शीशा लगा हुआ है बाहर की तरफ से एंट्री अंदर एंट्री करते ही सामने एक सीढ़ी गई हुई है .

यह एक दौड़ का मैदान है। यहाँ पे बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे चार बच्चे है जो दौड़ रहे हैं। एक ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी है और तीन ने --

और उसके साइड साइड में खुला मैदान है जहां पे हरे हरे छोटे छोटे पेड़--

दस की बाहर की तरफ यहाँ पे शीशे का दराज है उस दराज में--

यहां पे एक दराज़ में साइड की तरफ बहोत सारी डॉल लगी हुई है जो अलग-अलग ड्रेसअप में हैं .

दो अलग अलग की है और ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। यहां पे बहोत सारे फूल के साथ बहोत सारे पत्ते भी रखे गए हैं।

यह पिक्चर एक गुरुद्वारे की है।

इस गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है। इस गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा बहुत सुंदर सजा हुआ है। इस गुरुद्वारे में दो घड़ी लगी हुई है और एक झुमर लगा हुआ है। गुरुद्वारे के--

ये ऊपर से आसमान भी दिखाई दे रहा है। यह बाहाड बहोत डार्क कलर के हैं।

यह एक मिठाई की दुकान है इसमें बहोत तरह की मिठाइयां रखी हुई है यहां पे लोग आ रहे हैं मिठाई लेने के लिए यहां पे चिप्स के पैकेट अ काउंटर में बहोत तरह की मिठाइयां रखी हुई है यहां पे कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं।

मेन्स पार्लर की दुकान है यहां पे तीन कुर्सियां रखी हुई हैं कुर्सियों के पीछे--

यह पिक्चर एक फल के दुकान की हैं यहां पे बहौत तरह के फल और--

यहां पे एक मंडप सजा हुआ है जो जिसमें शादी चल रही है और बहोत से लोग शादी में इन्वाइट होने के लिए आये है यहां बहोत भीड़ है और यहां पे--

यह एक झील है इस झील में दो लोग नहा रहे हैं इसके साइड साइड में--

चट्टाने बने हुए है एक चट्टान से--